और बिजली के खंभे भी है और आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

सजावट की हुई है और लाइटे भी दिख रहे हैं। एक ए_सी भी लगा हुआ है।

बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं एक दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर कितना सारा पानी दिखाई दे रहा है लोहे का खंबा भी है।